यहां पे मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

परदे लगे हुए हैं आदमी बैठे हुए हैं चेयर रखी हुई है।

यहां पर मुझे लकड़ी के काफी सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं कांच की एक टेबल रखी हुई हैं।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं बिजली के कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक मुझे कार्यालय नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे बहुत सारी सोलर प्लेटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं टेढ़ा मेढा टंगा हुआ है।

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं कैरम बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।